बगल मे पेड़ है जो सुख चूका है थोड़ा-मोड़ा और पूरा ठंड ठंड वाला जगह है पूरा ये --

एक स्टूडियो एक स्टूडियों का नया उद्घाटन हो रहा है आप लोग देख सकते हो जैसा की इस स्टूडियों का नाम है इशाना मेकअप स्टूडियों इसी जगह फोटो घिचा है अपना--

ये एक सामने की स्टेट बैंक है जिसमें सभी लाइन लगे हुए हैं पैसा निकाल ने के लिए और सामने एक ठेला है और एक बाइक है हीरो का--

यहां एक नहड़ है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है और बगल मे रेत है और यहां पे ब्लैक वाइट कलर का लगा हुआ है बगल में पाइप भी है।

यह ओरियो बिस्कुट भी चपका हुआ है और ऊपर से डेयरी मिल्क चॉकलेट भी है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

कॉफी शॉप है जो दो कॉफी ऑर्डर किया गया है और ब्लैक कलर का कप है और दो ब्लैक चम्मच है और उसके बगल मे ऑरेज कलर का पैकेट है और एक ट्रे मे रखा हुआ है और एक बगल मे चाभी है बाइक का--

सब में गद्दा लगा हुआ है नीला कलर का और कुर्सी येलो इस कलर में है जो देखने मे लग रहा है अभी नया है जो अभी लिया गया है और उसके बगल में एक भी सोफा सोफा व्हाइट कलर का पीछे में उसका जो देखने में काफी--

और ये अपने लटके हुए है पकड़ के और उसके बगल मे एक रड है स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट को कस रहे है और जो देखने मे काफी अच्छा लग रहा है और हाथ में इन्होंने ग्लव्स भी पहना हुआ है।

बच्चों का डांस क्लास है जिससे बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है इसमें दो दो प्राइस टंगे हुए हैं जो इससे पता चलता है कि किसने दो बार प्राइस जीता है और पीछे में उसके मास्टर जी फोटो खींच रहे हैं जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

एक लड़का उसे माला को गुथने का प्रयास कर रहा है और बहुत सारे लंबे-लंबे यहां पे फूल के पौधे सब फूल लगे हुए हैं जो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।